ये होटल है होटल में टेबल पे काफी सारा--

प्लेट वगेरा रखा गया है कप अम्म कप भी है।

और बहुत ज्यादा कार पार्किंग लगी हुई है पेड़ पौधे भी है।

और ऊपर से स-सफ़ेद लाइटे भी जल रही है।

बहोत अच्छा लग रहा है पिले कलर में नीचे--

लोग है फील्ड है फील्ड के नीचे छाया में--

और यहां पे साइकिल और गाड़ी मोटरसाइकिल के रिपेयरिंग की जाती है।

बीच में एक कार खड़ी है कार के अगल बगल भी बहोत ज्यादा ही लोग--

और थोड़ा सा बिच में स्पेस है।

और यहां पर बाउंड्री बाउंड्री भी लगी है लोहे का ये सब--

रास्ता बनाया गया है बिच में प्रोखरा है नदी है।

और हरे हरे पेड़ पौधे भी ऊपर दिख रहा है।

और ये चारो तरफ अः खिड़किया ऐ_सी कूलर लगे हुए है।

ये स्कूल है स्कूल मे उम दरवाजे पे टीचर वगैरा भी खड़ी है ।

सीढ़िया वाली स्लाइडर बना हुआ है वहाँ भी दो लोग खड़े हैं स्कूल के सामने।

खरीदे भी जाते हैं बहुत सारे ब्लैक कलर के व्हाईट कलर के--

कॉलेज के नाम वगेरे कार लगी हुई बाहर बहोत ही--

ये फील्ड है फील्ड है फील्ड में काफी सारे--

अ अंदर दुक दुकान के अंदर काफी सामान पैकेट भरा हुआ होगा।

और यहां पे मोबाइल वगैरा मिलता है मोबाइल वगैरा की दुकान है ये--

रिचार्ज भी होते होंगे और नीले कलर का--

और बहुत ही सुन्दर लग रहा है दीवाल पे--

और पेड़ पौधे भी है पेड़ पौधे के नीचे कार और भी लगा हुआ है।

एक बै पैकेट वाला बिस्कुट वगैरा कुछ समान वोमान भरा हुआ है।

और ये कॉर्नर पे अलमारी में भी सामान है।

एक तरफ बाउंड्री है और एक तरफ घर है पूरा बना हुआ और कार लगी हुई है रोड पे।

लगे हुए है नीचे अनानास वगैरे फल खरबूज है तरबूज--

यहाँ पे तेल लिया जाता है ऐसे गाड़ी चलती है तेल से--

और दूर पेड़ पौधे भी दिख रहे पीछे इसका ऑफिस दिख रहा है।

इधर सफेद में रेड कलर में और मछली है छोटी बड़ी मछली है।

और छट पूजा नेशनल पर्व में आ रहा आ गया है।

और यहां छठ माता की पूजा करने के लिए काफी सारी लेडिजें हाथ जोड़ के बैठी हुई है।

ये हायवे का रोड है रोड पे किनारे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और --

पिले कलर का बाउंड्री लगी हुई है लोहे की।

इधर ढलान में सीढ़ी भी बनाया गया है ब्लैकनेस्स है।

और बाहर से ए _सी वगैरा भी दिख रहा है रूम तार वगैरा बोर्ड वोर्ड लगा है ।

लग रहा है बच्चों को बच्चों ने डिज़ाइन किया है इसका--

ये बहुत सारा दुकान है किनारा किनारे रोड पे--

अ दो डस्टबीन भी रखा गया है ग्रीन घास है हरा भरा और बहुत सुन्दर दिख रहा है यहाँ का --